एक किला दिखाई दे रहा है किला में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

एक थाली रखी हुई है थाली रखने के बाद कुछ पंडितजी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

बाइक के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है बाइक के बाहर एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है।